फैक्ट्री नज़र आ रही है जहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है उसके जूते भी पहने हुए है ब्लैक कलर का पैंट भी पहना है वाइट शर्ट भी पहना है टाई भी लगाई हुई है जैकेट भी पेहेना ऊपर कैप भी लगाया हुआ है।

यहाँ पर मुझे लग रहा है की छठ माई की पूजा चल रही है इस इमेज छठ माई की पूजा दिखाई जा रही है जंहाँ पर आदमी अपने हाथ में हाथ अगरबत्ती लिए हुए है कुछ महिलाये है जो हाथ जोड़ कर--

कलर बना रही है बांट रही है और यहाँ पर कुछ ऑरेंज कलर का बी है कुछ लाल कलर की है कुछ वाईट कलर का बी है यहाँ पर अपनी यूनिफॉर्म के साथ है यहाँ पर--

गोला गोला बना रही है कुछ यहाँ पर और दु-- दुगा भी नज़र आ रही है मुझे और पेड़-पोधे भी नजर आ रहे है।

मुझे इस इमेज में दिखाई दे रहा है की कुछ महिला भी नजर आ रही है कुछ पुरुष भी नजर आ रहे हैं जो दिए जला रहे है यहाँ माता रानी की तस्वीर है।

इस इमेज में मुझको नजर आ रहा है की एक महिला भी नजर आ रही है जो की वाइट कलर के कपड़े पहने हुए है यहाँ पर कुछ ऐड बन रही है बहुत सारे गुब्बारे नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर--